ऐ यहां बीच में रेलिंग की हुई है जिसके बीच में एक तुलसी का पौधा रखा हुआ है वहां पर एक बच्चा और एक आदमी और एक औरत --

कुर्सियां लगी हुई है उधर एक सफेद कलर का घर भी दिख रहा है और पेड़ों पर अलग अलग प्रकार के फूल हैं।